हैलो गाइज आपको यह पर बहोत बड़ी-बड़ी फ़िशेस नजर आा रही होंगी और ये दिखने मे बहुत ही अच्छा लग रहा है।

एंड अपको उसके पीछे कुछ विंडोज़ भी नजर आ रही होगी एंड वहाँ पे तीन चार लोग भी खड़े आपको उसके बगल में दो पटरी भी नजर आ रही होगी एंड उसके बगल में एक रेल गाड़ी भी जा रही --

हैलो एव्रीवन। आपको यहाँ पर एक पेट्रोल पम्प का व्यू नजर आ रहा होगा। एण्ड आप देख सकते हो उसके पीछे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है इंडियन ऑइल का।

हेलो गाइज आपको यहां पर एक दिख रहा होगा। यहां पर बहुत लम्बे -लम्बे टीने बीछे हुए हैं ।